एग्जाम में एन.सी.सी. दैनिक भास्कर और बहुत कंपनी के प्रचार हो रहले है ।

बहुत तेज़ तरह से होरल है और देखे कितनी भी बही कंपनिया में और कंपनिया नही देय --

अब हरयाली ये है चारों पटी सांझ के समय सूर्योदय सांझ के समय होवो हई तो बड़ी ठंडा --

अ ऊपर में ईसु मसीह के फोटो बने लगी है अ पहा --

इ देखी समुंदरवा के किनारे हले ओ समुन्द्र नही नदी है नदिया किनारे चारो पटी